इस क्षेत्र में बहोत ही स्वच्छ और शांत वातावरण दिखाई दे रहा है। नीचे हरे रंग की घास है और कुछ झाड़ियाँ हैं हरे रंग की।

हमे कांच के अंदर तीन वाहन ऑटो रिक्शा खड़े हुए दिख रहे है हरे और पिले रंग के --

बिल्डिंग के उपे एक नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ जिस पे सफ़ेद रंग से कुछ लिखा हुआ है। बिल्डिंग के बाहार --

और दो नंबर लिखा हुआ है। सड़क पर एक बुरे रंग का पत्थर है। स्-इसकी छत सफेद रंग की है।

यहाँ पर एक स्टील की एक रेलिंग है। एक पाइप दिख रहा है।

और प्याज़ रखा हुआ है और एक आदमी ने हाथ मे दोना पकड़ा है जिसमे --

नीले रंग का एक बक्सा है बाकि मशीने सफ़ेद रंग की है पर्दा लगा हुआ है भूरे और पीले रंग का --

इस के ऊपर एक नीले और सफ़ेद रंग का बोर्ड लगा हुआ है जिस पर एस.डी.एम. ऑफिस लिखा हुआ है।

यह चित्र किसी विद्यालय का लग रहा है। जिसमें दो अध्यापक साड़ी पहनी हुई युक्तियाँ खड़ी हैं।

यह दृश्य किसी मंदिर का है। जिस जिसके --

सलाद है जिसमें कुकुम्बर खीरा और प्याज है।